कैमरा खोले हुए इसमें जो लोग हैं वो झुक के अपनी प्रार्थना कर रहे हैं।

और काफी साफ़ मैदान है ये।

इस स्टोर को अभी अच्छे तैयार नहीं किया गया अभी यह निर्माण की प्रगति में है |

हम देख सकते हैं इसमें को कुछ तोते हैं कुछ अलग प्रकार की चिड़िया हैं इसमें उजले रंग की भी चिड़िया हमें दिख रही हैं और ये सारी एक पिंजरे में बंद है जो की बेचने के लिए कोई लाया होगा ।

और अगल-बगल में जो बिल्डिंग है यह पिंक और वाइट कलर से पेंटेड हैं और बिल्डिंग सारे बिल्डिंग में ए.सी. लगा --